और ये कपड़े देते है इसमें बेडशीट मिलती है इसका कलर लाल भी होता है पीला भी होता है नीला भी होता है।

हर कोई जैसे कि लोग बीमार आदमी होते हैं।

ये एक रेस्टोरेंट है और ये डब्ल्यू टीगी में अंदर है।

हवा आती है जिससे कि ए_सी लगा हुआ है।

ये पहाड़ को देख रहे हैं इनके सामने नारगढ़ किला है।

गमले रखे हुए हैं गमलो का कलर पिंक है नीला है और पेड़ो का कलर हरा है।

पक्को का कलर ब्राउन है और गेट है।

और लोग-बाग यहां पे वॉक करने आते है रनिंग करने आते हैं और जोगिंग करने आते हैं।

इसके पास मे गाड़ी लगी हुई है और ऑफिस में एक काली कुर्सी रखी हुई है।